जीचेमटेबल में फीचर्स एंड कलर स्कीम्स के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे जीचेमटेबल एलीमेंटल विंडो और कलर स्कीम्स इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबन्टु लिनक्स ओएस वर्जन 1204 जीचेम्पेंट वर्जन 01210 जीचेमटेबल वर्जन 01210 इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आप एलीमेन्ट्स की पिरीऑडिक टेबल और जीचेम्पेंट के साथ परिचित होने चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
अब जीचेमटेबल एप्लीकेशन के बारे में सीखते हैं
जीचेमटेबल जीचेम्पेंट के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की तरह संस्थापित की जा सकती है
सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर उपयोग करके
जीचेमटेबल रासायनिक एलीमेन्ट्स की पिरीऑडिक टेबल एप्लीकेशन है
यह एलीमेन्ट्स के बारे में विज्ञान सम्बन्धी जानकारी देता है
यह पिरीआडिक टेबल को भिन्न कलर स्कीम्स के साथ दर्शाता है
जीचेमटेबल खोलने के लिए दश होम पर क्लिक करें
प्रदर्शित सर्च बार में टाइप करें जीचेमटेबल
पीरियोडिक टेबल ओएफ थे एलिमेंट्स आईकन पर क्लिक करें
पीरियोडिक टेबल ओएफ थे एलिमेंट्स विंडो खुलती है
विंडो बेस्ड एप्लीकेशन्स के जैसे ही जीचेमटेबल विंडो मेन्यूबार रखती है
मेन्यूबार वो सभी कमांड्स रखती है जिसकी आपको जीचेमटेबल के साथ काम करने के लिए ज़रुरत है
यह एलीमेन्ट्स की पिरीऑडिक टेबल है यहाँ आप एलीमेंट बटन्स देख सकते हैं
एलीमेंट का नाम प्राप्त करने के लिए कर्सर को एलीमेंट पर रखें
टेबल में बटन्स के लिए उपयोग हुए कलर्स एलीमेन्ट्स के आम कलर्स हैं
यह टेबल मॉडर्न पिरीऑडिक टेबल की प्रतिरूप है
अब एलिमेंटल विंडो के बारे में सीखते हैं
इसको प्रदर्शित करने के लिए पिरीऑडिक टेबल पर किसी एलीमेंट बटन पर क्लिक करें
मैं कार्बन पर क्लिक करुँगी
कार्बन की एलिमेंटल विंडो खुलती है
एलिमेंटल विंडो चार साइड टैब्स रखती है मेन इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज रेडीआई थर्मोडाइनामिक्स मैं प्रत्येक टैब के बारे में एक एक करके समझाऊंगी डिफ़ॉल्ट रूप से मेन टैब सलेक्ट किया हुआ है
यह एलीमेंट का सिंबल रखती है एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
यह लांग और नामे नामक शीर्षकों के साथ एक टेबल रखती है
टेबल अनेक भाषाओँ में कार्बन के नाम दर्शाती है
आगे इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज टैब पर क्लिक करें
यह टैब निम्न के बारे में जानकारी दर्शाती है पॉलिंग electro नेगेटिविटी वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जीज पहली दूसरी और तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जीज एमजे पेर मोल में हैं
इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटीज केजे पेर मोल में हैं
दायीं तरफ सम्बंधित शो कर्व बटन्स देखे जा सकते हैं
चार्ट देखने के लिए शो कर्व बटन पर क्लिक करें
यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनाम एटोमिक नंबर का चार्ट है
मैं चार्ट बंद करुँगी
रेडी टैब पर क्लिक करें
यह टैब दर्शाती है कोवेलेंट वन डेर वाल्स और मेटालिक रेडी वैल्यूज सभी पीम में हैं
पीम मतलब पिको मेत्रे बराबर 10 की घात 12 मीटर
चूँकि कार्बन नॉन मेटल है यह मेटैलिक रेडियस वैल्यू नहीं रखती है
मैं कार्बन विंडो बंद करुँगी
अब वापस एलीमेन्ट्स के पिरीऑडिक टेबल विंडो पर जाते हैं
अब सोडियम बटन पर क्लिक करें
रेडी टैब पर क्लिक करें
मेटालिक रेडी वैल्यू प्रदर्शित होती है
रेडी टैब आयोनिक रेडी की टेबल रखती है
यह टेबल कॉलम के रूप में आयन cएन
और वैल्यू रखती है
अब इस टेबल पर नीचे स्क्रोल करते हैं
यह टेबल उन भिन्न आयनिक स्टेट्स की जानकारी देती है जिसमे सोडियम मौजूद है
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और आयनिक रेडी वैल्यू पीम में हैं
एलीमेन्ट्स क्रोमीअम मैंगनीज़ आयरन कोबॉल्ट निकल और कॉपर अधिक संख्या में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की प्रवृत्ति रखते हैं
अब आयरन बटन पर क्लिक करें
इसकी एलीमेंटल विंडो खुलती है
रेडी टैब पर क्लिक करें
आयोनिक रेडी टेबल स्पिन नामक एक अतिरिक्त कॉलम रखती है
स्पिन कॉलम आयरन के कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की प्रवृति के बारे में अनुमान देता है
यहाँ हिघ का मतलब स्पिन मुक्त कॉम्प्लेक्सेज़ है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित हैं
लो का मतलब स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेज़ जहाँ इलेक्ट्रॉन्स युग्मित हैं
मैं आयरन एलीमेंटल विंडो बंद करुँगी
कॉम्प्लेक्स फार्मेशन के बारे में अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है
httpenwikipediaorgwikiSpin states d electrons दोबारा कार्बन की एलीमेंटल विंडो पर क्लिक करें
थर्मोडायनामिक्स टैब पर क्लिक करें
यह टैब कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट प्रदर्शित करती है
शो कर्व बटन को अपने आप जाँचें
मैं कार्बन एलीमेंटल विंडो को बंद करुँगी
अब कलर स्कीम्स पर जाते हैं
व्यू मेन्यू पर जाएँ और कलर स्कीम्स सलेक्ट करें
एक सबमेन्यू कलर स्कीम्स की सूची के साथ खुलता है
नो कलर्स पर क्लिक करें
सारे एलीमेंट बटन्स ग्रे में बदल जाते हैं
कलर स्कीम्स पर क्लिक करें और फिजिकल स्टेट्स सलेक्ट करें
एक नयी पिरीऑडिक टेबल ब्लू कलर के एलीमेंट बटन के साथ खुलती है
कुछ बटन्स को ब्लैक छोड़कर
सबसे ऊपर आप न्यूनतम वैल्यू के साथ टेम्परेचर स्केल स्लाइडर देख सकते हैं
नीचे आप सॉलिड ब्लू लिक्विड ग्रीन और गैस रेड के कलर्स देख सकते हैं
ज़ेरो डिग्री केल्विन पर सारे एलीमेन्ट्स सॉलिड स्टेट में हैं
इसीलिए यह ब्लू कलर में दिखाई देते हैं
अब टेम्परेचर बढ़ाने के लिए स्लाइडर को खींचें
ध्यान दें कि एलीमेन्ट्स अपनी फिज़िकल स्टेट बदल देते हैं
ब्लू कलर ग्रीन लिक्विड और रेड गैस कलर्स के द्वारा बदला जाता है
6010 डिग्री केल्विन पर सारे एलीमेन्ट्स गैसीय स्टेट में बदल जाते हैं
सारे बटन्स रेड कलर में बदल जाते हैं
कुछ एलीमेन्ट्स ब्लैक बैकग्राउंड में दिखाई देते हैं
उस टेम्परेचर पर उनकी स्टेट अज्ञात होती है
आगे फैमली सलेक्ट करते हैं
सिलेक्ट फैमिली ड्राप डाउन बटन दिखता है
ड्राप डाउन सूची में अनेकों फैमिली उनके सम्बंधित कलर्स के साथ होती हैं
बाइ डिफ़ॉल्ट अल्ल सलेक्ट किया हुआ है
एलीमेन्ट्स की प्रत्येक फैमली एक विशेष फैमली कलर में दिखती है
ड्राप डाउन सूची पर क्लिक करें और मेटलॉइड्स सलेक्ट करें
मेटलॉइड्स ग्रीन फैमली बैकग्राउंड कलर में प्रदर्शित होते हैं
बाकी सारे एलीमेन्ट्स ब्लैक बैकग्राउंड में प्रदर्शित होते हैं
कलर स्कीम्स पर वापस जाएँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कलर स्कीम्स सलेक्ट करें
रेड कलर के एलीमेन्ट्स न्यूनतम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू रखते हैं
ब्लू कलर के एलीमेन्ट्स उच्चतम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू रखते हैं
रेड से ब्लू कलर में धीरे धीरे बदलाव होता है
बीच वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज पिंक कलर के एलिमेंट्स की होती हैं
अगर डेटाबेस में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है तो एलीमेन्ट्स ब्लैक बैकग्राउंड रखेंगे
अब ब्लॉक सलेक्ट करें
प्रत्येक ब्लॉक के एलीमेन्ट्स आवंटित ब्लॉक कलर के साथ प्रदर्शित होते हैं
एस ब्लॉक ब्लू प ब्लॉक रेडिश ब्राउन डी ब्लॉक ग्रीन और फ़ ब्लॉक पर्पल
अब सारांशित करें कि हमने क्या सीखा इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा एलीमेंटल विंडोज के विवरण के बारे में निम्न की कलर स्कीम्स 1फिज़िकल स्टेट्स 2फैमली 3इलैक्ट्रोनेगेटिविटी और 4ब्लॉक एक नियत कार्य की तरह जाँचें कोबॉल्ट निकल कॉपर और अन्य की एलीमेंटल विंडोज भिन्न फैमली कलर स्कीम्स एटॉमिक रेडियस कलर स्कीम्स
इस उर्ल पर उपलब्ध विडिओ देखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है
httpspoken tutorialorgNMEICT Intro आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद